और एक ताड़ का गाछ है नारियल का पेड़ और भी बहुत सारे प्रकार के पेड़ है जो की बहुत बहुत ही सुन्दर है |

ये एक गार्डन है। ये गार्डन में बहुत सारे बड़े पेड़-पौधे और ढेर सारे फॅमिली लोग आ कर के टाइम स्पेंड करते हैं।

बीच में भगवान का भगवान का मूर्ति है जो बहुत ही सुन्दर बना हुआ है।